हरे कलर के कटे मे कुछ रखा हुआ है। नीचे बाल्टी रखी है। पानी फेला डाला हुआ है। एक पन्नी का रेफर डाला हुआ है। बाल्टी डली हुइ है एक स्टिल की कुछ फल रखे हु--

जो की फिटिंग के लिए उपर और सलिए डले हुए है। सामने पेड़ लगे हुए है। एक आदमी छत पर बेटा है। सलियों के उपर कुछ कटे डले हुए है और एक बोटेल रखी हुइ है।

सामने एक हरे कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे काले अक्षरसे कुछ लिखा हुआ है बगल मे एक अलमारी है और एक टेबल है उसके गोल में कुर्सियां लगी हुए है कुर्सियां काले कलर की है एक एसी का कोना दिखाइ दे रहा है सामने एक केमरा लगा हुआ है बगल में --

बगल एक बौन्ड्री बनी हुई है जिसके बगल से बहुत सारे पेड़ है कुछ छोटे है कुछ बड़े है एक घर मे बहुत लाइटिंग जल रही है।

पिक्चर चिपका हुआ है और सामने जो दीवार है वो सफेद कलर की एक बाइका अ म अ एक इन्डकैटर दिखाई दे रहा है। सामने एक अलमारी रखी हुई है बड़ी। छत का रंग सफेद है ज --

ये एक मॉल है। जिसपे वीटू लिखा हुआ है। एक पोस्टर लगा हुआ है। पर भी वीटू लिखा हुआ है। बगल वाले पोस्टर एक लड़की का है। उसपे भी वीटू लिखा हुआ है।

स्कूल के बगल से ही पेड़ लगे हुए है और कुछ लाइन से पेड़ गए हुए है। एक इधर की सामने भी पेड़ लगे हुए है। और एक बाउंड्री गयी है। जो लाल और पीले कलर की--

तार निकले हुए है। पीले कलर का ऑटो रिक्षा है। सामने पेड़ लगे हुए है। उसके पीछे भी कही पेड़ लगे हुए है। छत है। जो सफ़ेद रग की है। और उसपे ऑरेंज कलर की पट्टी--

सामने कुछ बलिया लगी है। ये बलियो का रंग ब्राउन कलर का है। और उपर सीमेंट डली हुई है। जमीन पर हरे रंग का--

और एक बाउन्ड्री बनी हुई है। ज और सामने कुछ ठेले लगे हुए है। कुछ आदमी पैदल चल रहै है। कुछ आदमीयों ने सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई है।

सामने एक मॉल है। जिसमे बहुत सारी सिडिया बनी हुए है। सीढ़िया का रंग काला है। और कुछ रेल्वे बनी हुइ है। एक सामने छोटे बच्चो वाली नीले कलर की गाड़ी रखी हुइ है। जिसकी लाइट जल रही है।